एक दुकान वाले का लोन दिख रहा है कागज़ दिख रहा है और बहुत सारा समान दिख रहे हैं रस्सी दिख रहा है।

एक बिल्डिंग दिख रहा है दो दरवाजा दिख रहा है दो खिड़की दिख रहा है दो कुर्सी देख रहा है दिख रहा है अउ तार दिख रहा है।

टेंट है लगाए टेंट के ऊपर झालर बत्ती लगा है दो आदमी है एक आदमी के साथ बुढ़िया खड़ा है एक इधर है तीसरे साइड पेड़ हैं तार हैं।

पक्का का घर दिख रहा है पक्का घर के अंदर दो आदमी खेल रहे है दो बल्ब दिख रहा है।

बैंक के अंदर कुर्सी दिख रहा है कुर्सी दिख रहा है दरवाजा दिख रहा है टेबल दिख रहा हैं ।

बाइक दिख रहा है लाल बाइक दिख रहा है सफ़ेद बाइक दिख रहा है हरा--

पहाड़ दिख रहा है पहाड़ के ऊपर घर है ऊपर पेड़-पौधे दिख रहे चट्टान दिख रहा है पहाड़ के ऊपर से पानी गिर रहा गिरता हुआ दिख रहा है।

टेंट दिख रहा है पियर टेंट है झालर पत्ती लगा है फुल लगा है दो आदमी खड़ा है बहुत सारे कुर्सी है।